जैसे वो चाँद केस-होस जोयों ओहो हो यामिनी के पान मदिरायें बेचती हैं बे फान पे धारा मुरसद यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मिल्ला और ये सब ।

जैसा की पब्लिक बाइक खड़ी है बहोत बहोत सारे यहाँ पे घेरा लगाया --

एक बंदर ऐसे जैसे छत बना हुआ है जिसकी पेंटिंग पूरा उतर चुकी है यहाँ --

कोई स्टेशन यहाँ पे टेम्पो वगैरह सब भी है इधर भी जितने टेम्पो यहाँ पे एक आदमी खड़े है ना इसे --

यहाँ पे सेंटर है यहाँ पे देखिए नए-नए गुब्बारे बंधे हुए हैं कितनी अच्छी लाइटिंग होती है मस्त सीन जगह है यहाँ पे लाइटिंग की --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

सेलिब्रेशन यहाँ पर केक भी पोस्टर लगाया गया है पर मार्बल भी लगाए गए बहुत ही सुंदर दिख रहा है ।